और जिस के ऊपर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए है पोस्टर का रंग पीला काला सफ़ेद है पेड़ पोधे है जिन का रंग हरा है ऊपर आसमान है। ]

यहाँ एक सडक है सड़क के किनारे एक बड़ी सी ईमारत है इमारत का रंग पीला और लाल है इमारत में अन्दर जाने के लिए एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है।